जिसे कुछ पर्दे से ढका हुआ है और ऊपर बहोत से लोग बैठ हैं।

इसमें हम हमें एक लाइब्रेरी नजर आ रही है जिसका नाम है डॉक्टर ए_पी_जे अब्दुल कलाम नीचे इसके फोन नंबर लिखे हुए हैं।

जिसपे थोड़े बहुत लोग खड़े हैं और एक सेंटर टेबल लगाकर उसके अराउंड बहोत सारी चेयर्स लगाई हुई है।

जहां पर कुछ केक सेरेमनी होगा या दूल्हा दुल्हन को बैठाया जाएगा।

और नीचे इसी के नीचे जनरल स्टोर की दुकान दिखाई दे रही है।

इसमें हमें एक अ स्कूल में स्कूल का स्टाफ रूम नजर आ रहा है।

जो की इन्हीं स्टूडेंट्स के और रिचेकिंग के लिए यहां पर--